इसमें ब्यूटी प्रोडक्ट लगे हुए दिख रहे हैं ऐ. सी. लगा हुआ दिख रहा हैं सामने एक पर्दा लटका हुआ दिख रहा हैं।

अगल-बगल में एक दो मकाने और पेड़-पौधे दिख रहे है साथ ही पहाड़ भी दिख रहा हैं ।

एक दुकान दिख रहा है जिस के बाहार--

सामाने एक नदी जाती हुई दिख रही है नदी के किनारे एक स्टैन्ड बना हुआ दिख रहा है जहाँ दो आदमी --

किनारे पेड़ पौधे के साथ साथ घाँस और हरियाली दिख रही है उपर--

दूर एक पहाड़ दिख रहा है आकाश साफ नज़र आ रहा है।

एक ब्यूटी पार्लर दिख रहा है जहाँ पे दो कुर्सियाँ लगा हुई दिख रही हैं।